लेले लेले रंग की कुर्सी लगा रखी है। कमिज लगा रखा है और--

और एक चेयर्स के ऊपर व्हाइट कलर का टॉवल रखा हुआ है साइड में और भी समान रखा है बहोत सारे बैलूंस लगे हुए है।

बाहर बाइके खड़ी हुई है बहोत ही ज्यादा गंदी है काफी साफ सुथरा नहीं है बिल्कुल भी एक रिक्शा खड़ी है और अ--